गेट के बाहर एक टू व्हीलर बाइक खड़ी है।

इस रोड के उस तरफ एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है रास्तों को दो भाग--

ग्रास के बीच में रंग बिरंगे फुल भी दिखाई दिखाई दे रही--

यहां पर हमें एक गिफ्ट शॉप दिखाई दे रहा--

उसमे कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे--

इस दृश्य में हमें एक शोरूम दिखाई दे रहा--

गार्डन बहुत ही हरा भरा है।

गार्डन में बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे--

गार्डन के पक्षों को बचाने के लिए फेंसिंग भी दिखाई दे रही है।

होटल की बिल्डिंग बहोत बड़ी और सुंदर है।

इस दृश्य में हमें बड़ा सा हॉल नजर आ रहा हैं।

बहुत सारे हरे भरे बड़े पेड़--

इस दृश्य में हमें एक दुकान नजर आ रहा है।

बैनर लगा हुआ है नीचे हरि ग्रास है।

अपने नीचे बैठने के लिए अलग रंगो के मैट रखे हुए हैं इसमें एक आदमी और एक औरत उनको योगा सीखा रहे--

एक मंदिर नजर आ रहा है।

वाजू मे बहोत सारे बस दिखाई दे रहे--

ये एक जिम का दूृश्य है।

बहोत बड़ी और सुंदर है यहां पर बायसल की--

जंगल बहोत बड़ा और सुंदर लग रहा है।

इस जंगल के बीच में से नदी बेह रही है जंगल के पेड़ बहोत हरे भरे और घने--

बार्बर शॉप बहोत ही सुंदर दिख रहा है उस--

उसमें एक आदमी बाल कटाते हुए दिखाई दे रहा है उसको हरे पत्तों से सजाया हुआ है।

इस दुष्य में एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

बंधा हुआ घर दिखाई दे रहा है घर के--

बहोत ही पुरानी लग रही है।

इस दृश्य में हमें एक बहोत--